हमें बहोत लोगों की भी--

जैसे पड़ी हुई चीजे--

इसमें तो बहोत सारे टेबल्स --

इसमें बहोत सारे स्टूडेंट्स --

किसी रूम की तस्वीर--

सड़क पूरी टू टूटी हुई दि--